एक परदा भी दिखाई दे रहा है।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

मुझे यहां बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

और कच्ची भी देख रहा है।

बिल्डिंग को येलो कलर के रंग से लगाया हुआ है।

स्विमिंग पुल के अंदर बहुत सारा इंसान नहा रहा है।

ए_टी_एम के अंदर एक लड़का है।

और बाहर में बहुत सारे आदमी भी है।

आदमी लोग माथा में हेलमेट पहने हुए हैं।

एक आदमी आगे में रोल को ऑर्डर दे रहा है।

भी दिखाई दे रहा है।

सामने में दो फूल दिखाई दे रहा है।

तालाब के पीछे बहुत बरे जंगल है।

मुझे यहां फल की दुकान दिखाई दे रहा है।

सर के सामने एक चेयर भी रखे हुए हैं।

और स्टैंड में बस भी दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर बहुत सारे सामान रखे हुए है।

उसके अंदर सामान भी रखे हुए है।

तीन ठो चेयर भी दिखाई दे रहा है।